यह एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही सुन्दर शाम है।

एक बहुत ही अच्छे और सुन्दर से हमें मंदिर दिखाए गए हैं और बहुत बड़े मंदिर हैं।

यह मार्केट दिखने में काफी सुन्दर और मस्त है और यह मार्केट में बोहोत दूर-दूर से लोग घुमने --

और यहाँ बहुत दूर- दूर से लोग घूमने भी आते --

यह एक बहुत ही सुन्दर सी हमें मुर्गी पालन दिखाया गया है जोकि यहाँ मुर्गी को पालते हैं।

यह एक बहुत ही अच्छे सुन्दर से में आ अस्र्म्ब मेडिकल कॉलेज दिखाया गया है।